ये है गार्डन के लिए डिसने किया हुआ है बहुत अच्छी रंगी-रंगी फूल और अच्छे-अच्छे कपड़े से ये सजावट किया हुआ है ये गार्डन के लिए सेपरेटली --

ये मंदिर जाने का शुरुआत में येये मिल जाएगा।

अगर बाई -चांस आपको फल चाहिए फल भी ले सकते हैंअगर जूस चाहिए जूस भी ले सकते हैं यहाँ से--

जो भी रहने के लिए इंतजाम किया जाता है इस रिसर्चिव कंट्री के थ्रू --

ये है ट्रेनिंग सेंटर है जो भी लोग काम के लिए आ रहे हैं उसके लिए कैसे काम करना हैक्या है क्या नहीं हैं।

उसका डिजाइन कैसा हैक्या है करके बहुत सारे डिजानस है इसमें--

पुराने मोबाइल एक्सजेंज करके नया मोबाइल भी मिल जाएगा यहाँ पे--

ये है तालाब तालाब में बहुत पानी भरा हुआ रहता है ।

पढ़ाया जाता है जो बच्चों विदेशी से जा के अपना पढ़ाई चालू करना चाहते हैं।

हठ नहीं करना चाहते हैं वो बच्चों के लिए यहाँ पे--

ये दो लोग बैठे हैंजो अपनी पार्टी कर रहे हैं।

जो काम हम करके अपने टेबल पर बैठकर चाय-वाय पी रहे हैं आराम कर रहे हैं दोनों दोस्तों आपस में पार्टी कर रहे हैं।

इसमें बहुत सारे फ्रूट्स है सीसन फ्रूट्स भी बोलते हैं इसमें फ्रूट्स भी बोलते हैं इसको फूलो हैं।

ये है कार -विस बोलते हैं जो भी कार है उसकी बिल्स के लिए अलग-अलग अलग टाइप का बिल यहाँ पे मिलता है।

बड़े-बड़े घर हो के उसके सामने बहुत अच्छी जो बनाते हैं उसके अंदर हो जाते है ये एक घोड़ा --

ये फौजी ढाबा है यहां पे खाना मिल जाता है सुबह को दोपहर को रात तक इधर अच्छे अच्छे बढ़िया खाना मिलता है।

सबके लिए इधर पाउडर मिल जाता है।

ये है मैदान है यहाँ पे खेलने के लिए जगह बना हुआ है।

जो भी बड़ो से लेकर बच्चों लोग यहाँ पे खेलने के लिए जगह है।

ऑलरेडी हम कह सकते हैं क्रिकेट से लेकर हर कोई खेल खिलाया जाता है इस मैदान में--

सस्ती और अच्छी क्वालिटी भी मिल जाता है।

ये चॉकलेट की दुकान हैहर तरीके से कैंडी होता हैबच्चे लोग बहुत पसंद करके खा लेते हैं ये कैंडी शॉप है।

यह परचून की दुकान है रोज घर के लिए इस्तेमाल करने वाला सामान--

हर सामान यहाँ पे मिल जाता है एक रुपए से लेकर बहुत महंगे सामान भी इस दुकान में मिल जाता है तेल साबुन सरफ --

यहाँ पे बाथरूम के सामान मिल जाता है जैसे कि हाथ धोने वाला बेसिन हो गया टॉयलेट की बेसिन हो गया।

जो भी नया शॉप खोलने के लिए ऐसे वाला डेसिन बनाया जाता है।

यह कर्नाटक मिसि-मिसिजक ऑडिटोरियम है।

आरमा इंस्टिटयूट ऑफ आई एण्ड ट्यूशन सेन्टर है।

ये है जनरल स्टोर से जो भी सामान है साबुन से लेकर--

तेलपाउडरसर्फ पाउडर जो भी घर की समा इस्तेमाल करते हैं।

कपड़े का शो -रूम है यहाँ पे महिला का कपड़ा जितने सेल्स है--

छोटे से लेकर बड़े तक हर रंग-बिरंग की डिजाइनस मिल जाता है कलर्स भी मिल जाता है जो रंग चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा।

कम दाम से महंगा कपड़े तक यहाँ पे उपलब्ध है।

ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर रस्सी जैसा बना हुआ है यह चलने के लिए ट्रेनिंग है।

जैसे क्लाइबिंग बोलते हैं इंग्लिश में वो चढ़ाने के लिए--

ये है गार्डन है ये खेलने के लिए बना हुआ है बड़े से लेकर बच्चे से लेकर बड़े तक यहाँ पे खेलते हैं हर तरीके से खेल- खेल यहाँ पे हो जाता है स्पोर्टस से लेकर--

जैसे दौड़ होते हैं दौड़ का ट्रेनिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं।

ये साड़िया की दुकान है यहाँ पे हर तरह के टाइप की साड़ियाँ मिल जाती है।

बहुत महंगे-महंगे कपड़े जैसे- शादी पार्टी होती हैकि बर्थ -डे की पार्टी होती है हर तरीके से डिजाइन --

ये स्टेशनरी शॉप है यहाँ पे बच्चा लोगों के लिए--

यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है घर के लिए और दुकान के लिए जगह बना रहे हैं यहाँ पे जैसे बिल्डिंग बन जाएगा उसके बाद अंदर आराम से रह सकते हैं।

यह है डी_एस_के वैष्णव ढावा हैयहाँ पे शुद्ध--

सुबह उठकर एक्सेस करना जरूरी है इसके लिए ये जूम बनाया जाता है।

हर कोई सुबह एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है।

इसलिए यहाँ पे बनाया गया है ये जिम सेंटर --